इस फोटो में हमें एक प्लेग्राउंड --

इस फोटो में हमें एक कच्ची सड़क दिखाई दे रही है।

एक दुकान दुखाई दे रही है जहां पर बहोत सारे गिफ्ट्स प्लांट्स पोट्स --

ये फूल बहोत बड़ा है इसका गेट नंबर --

इस फोटो में हमें एक किराना स्टोर या माल दिखाई दे रहा है।

टॉय शॉप है जहां पर हर एक प्रकार के--